और कुर्सियों पे अह पालीथीन लगा हुआ है और यहां पे ये कुर्सियां बेच रहे हैं।

ये यहां पे दो मूर्तियां हैं और एक मूर्ति दूसरी मूर्ति की गोद में है।

ये यह यहां पे नीचे कुछ औरतें बैठी हुई है।

और नीचे बहुत कीचड़ लगा हुआ है और थोड़ा थोड़ा पानी जमा है।

ये जंगल है और यहां पे बहुत सारी पेड़ है।

एक शक्ल जो सुभाष चंद्र बोस की दिख रही है और हिन्दुस्ता --

जैसे कि वह सोफे हैं फैन है और पीछे कुछ डिब्बे हैं और--

आ वो छोटे छोटे पोल भी नजर आ रहे हैं।

और चेयर्स लगी हुई है और यहां पे कर्टंस हैं।

ये एक दरिया है और यहां पे बहोत सारे मकान भी नजर आ रहे हैं।

पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पेड़ नज़र आ रहे हैं और नीला आसमान --

ये यहां पर गाड़ी नजर आ रही है और जो की वाइट कलर की है।

और यहां पे एक आदमी खड़ा है उसने पर्पल कलर की अपर पहनी हुई है और ग्रे कलर का पैंट है उसके पैरों में जूता है।

यहाँ पे एक सोफे पे ब्लैक कलर के कुशन्स लगे हुए हैं और ब्लैक कलर की टेबल लगी हुई है।

शेल्फों पे डिब्बे हैं और यहां पे फैन दिख रहा है।

यहां पे एक लाइट चल रही है और यहां पे बहुत सारी नीचे भी चीजें रखी हुई नजर आ रही है।

ये यहां पे नित्र चल रहा है और ये स्टेजेस पे ये दो औरतें है।

और उसने बालों में गजरे पहने हुए हैं।

और एक आदमी फोटो उठा रहा है और एक छोटे बच्चे का सर नजर आ रहा है और--

धूप खिली हुई है मकान पे अ प्लस की साइन लगी हुई है।

कमरे में सोफा नजर आ रहा है।

और एक आदमी खड़ा है उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और वहां पर बहुत सारी पेड़--

दीवार है और उसमें येलो कलर किया गया है और ऊपर कुछ --